और एक जिन्ना चढ़ चढ़ रहा अस् एक जिन्ना है।

और एक एल_सी_डी लगी हुई है।

ये एक फोन की दुकान है और ऊपर सफेद कलर का बोर्ड लगाया लगा हुआ है।

और सबसे नीचे काले कलर का लगा हुआ है।

ये एक जिम है यहाँ पर बहुत सारा जिम का सामान रखा हुआ है।

जो नीले कलर की है और ये सारी यहां से कंसील लाइट लगी हुई है।

और यहां पर बहुत सारी ट्रे रखी हुई है।

ये एक दुकान है जिसमे पीले कलर का बोर्ड लगा हुआ हैं।

और सफेद कलर की पुट्टी हो रखी है यहां पर।

और स्कूल की गेट पर काले कलर का कलर हो रखा है।